यह एक बड़े से सब्जी बाजार का चित्र है।

यह एक बहुत से बड़े रूम का चित्र है सामने में एक बड़ासा दरवाजा नजर आ रहा है।

यह एक बहुत से बडे केन्द्र का चित्र है।

जो चैनपुर पलामू में स्थित है।

इसके बगल में एक दीवाल है जिसके सामने एक काले कलर का बड़ा सा रोड है।

यह एक बहुत बड़े नदी का चित्र है।

जिसमें बहुत सारे लोग बोट पर बैठकर बोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।

बीच में हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है बगल में एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

और बीच में एक सोफा भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत से बड़े घड़ी का दुकान का चित्र--

यह एक बहुत से बड़े एग्रीकल्चरल फील्ड का पिक्चर है।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

जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर मोबाइल कूट में रखे हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक रूम का चित्र है जिसमें शीशा का सेल्फ लगा हुआ है।

यह एक बहुत से बड़े जिम सेंटर का चित्र है।

यह एक बहुत से बड़े होंडा गाड़ी का शोरूम है।

यह एक बहुत से बड़े गोडाउन का चित्र है।

और एक कंटेनर भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत से बड़े ऑडिटोरियम का चित्र है।

यह एक बहुत से बरे एयरपोर्ट का चित्र है।

इसमें बहुत सारे रैक बने हुए हैं उसमें बहुत सारे अनेक प्रकार के बर्तन रखे हुए हैं।

यह एक बहुत से बड़े बैंक का चित्र है।

और एक इंसान काउंटर पर खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहुत सारे लोग योगा करते हुए नजर आ रहे हैं।

अर बगल में एक सीढ़ी भी नजर आ रहा है।

बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं जो रंग बिरंगे कपड़े पहिनकर पार्टी अटेंड करने आए हैं।